यह एक आयरन मैन का दृश्य है जो एक कपड़ा आयरन कर रहा है।

उसके दरवाजे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं।

एक बहुत बड़ा वोडाफोन का बैनर भी लगा हुआ है।

दो कुर्सियां भी दिखाई दे रही है एक कुर्सी पर एक जेंट्स आदमी बैठा हुआ है।

फर्श सीमेंट द्वारा बनाया गया है।

लकड़ी के द्वारा काउंटर भी बनाया गया है।

यह एक कंप्यूटर सेंटर एवं मोबाइल कॉर्नर का दृश्य है।

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है जिसके फर्श कागज द्वारा बनाया गया है।

पर विनय वस्त्रालय लिखा गया है।

बगल में एक फ्लावर भी रखा गया है।

कुर्सियां भी लगाई गयी है जो ग्रीन कलर के हैं।

यह एक पलंग दुकान का दृश्य है जहाँ पे बहुत सारे प्लाई रखे गए हैं।

यहां पे एक बहुत बड़ा पलंग भी रखा गया है जिसके कलर पिंक कलर से किया गया है।

एक वाइट कलर का कूलर रखा हुआ है।

एक आदमी भी दिखाई दे रहा है और वह बगल में केले का पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

झाड़ू भी मारने वाली एक बाई आई हुई है।

यहां पे बहुत सारे आदमी भी खड़े हैं।

यहां पे एक काउंटर भी बनाया हुआ है जो लकड़ी द्वारा बनाया गया है।

यहां पे तीन आदमी भी खड़े हैं।

उसके बैनर पे रेड कलर का पेंट से किया गया है।

बहुत सारे आदमी जो है वो रेड कलर के कुर्ता एवं टी शर्ट पहने हुए हैं।

बहुत बड़ा माल भी लगाया गया है जो गेंदा का फूल का लगाया गया है।

एक फोटो स्ट्रक्चर भी रखा गया है।

यह एक श्रृंगार दुकान का दृश्य है जहाँ पे लकड़ी की मदद से अलमीरा बनाया गया है।

तेल भी रखा गया है।

रजिस्टर भी रखा गया है।

बहुत सारे आदमी आए हुए हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं।

यहां पे एक फोर वेज कैरेक्टर भी रखा गया है।

बहुत सारे कंटेनर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे चोटी भी बांधी गई है।

लाल कलर के पट्टे से चोटी बाना गया है पीछे में एक स्प्रे बोटल भी दिखाई दे रहा है।

फर्श टाइल्स द्वारा बनाए गए हैं जो रेड कलर का टाइल्स है और आगे में एक बहुत बड़ा शिशा भी दिखाई दे रहा है।